ओ काफ़ी सारे रोड है यहाँ पर बाइक खड़ी है एयरपोर्ट लिखा हुआ यहाँ पे।

काफ़ी प्यारा लग रहा है इसके दिवार में सफेद कलर से पेंट किया गया है बीच में हरे कलर का जो है--

यह मॉल है यहाँ पे हर एक तरह की चीज़े है शर्ट टी शर्ट --